यहाँ पर देखो एक पानी आने आने की एक बॉल है वहाँ पर एक गाड़ी रखी है वही पर एक लड़का खड़ा है वही पर देखो पर्दा लगी है वही पे देखो एक डंडा बने हुए --